बिस्तर के बगल में एक दरवाजा है जिसमें लकड़ी का डिजाइन बना है।

बीच में एक बेंच भी है।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

पीछे कई लोग खड़े हैं।

नीचे का मिट्टी कच्ची दिख रही है।

ऊपर एक ए_सी भी देख सकते हैं।

ये तस्वीर एक डांस क्लास का दृश्य दिखाता है यहां पर बच्चे एक सिखाने वाले के साथ डांस कर रहा है।

कुछ लोग शापिंग कर रहे हैं।

छत पर पंखे लगे हुए हैं।

यह तस्वीर एक महाविद्यालय की है जिसका नाम पश्चिम गुवाहाटी महाविद्यालय है।

इस तस्वीर में एक ड्राई फ्रूट्स और फलों की दुकान दिखाई मिलता है जिसका नाम मां चंचला ड्राई फ्रूट्स है।

दुकान के बाहर केले सेब और दूसरे फल सजाए गए हैं।

यह नजारा रात का है।

ऊपर का आसमान साफ है।

तस्वीर में कुछ ही दूर कुछ पैर भी दिखाई मिल रहा है।